यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है पेड़ लगे हुए हैं एक बच्चा खड़ा हुआ है और वो तरबूज खा रहा है पेड़-पौधे भी काफी लगे हुए हैं और उसके पिछे पानी बह रहा हुआ है।

ये एक गार्डन दिखाई दे रहा है जो काफी ग्रीनरी है दो एंजल के स्टैचू है दो एलीफेंट के स्टैचू है।

ये मैदान है जहां पे घास लगी हुई है बहुत सारे पेड़ है एक आदमी खड़ा हुआ है उसकी बाइक खड़ी हुई है।

आसमान नजर आ रहा है वहां पे सीढ़ियो से कोई जगह निकली हुई है यहाँ पर रोड रोड रोलर पड़ा हुआ है।

आस पास ग्राउंड के बाउंड्री में बनी हुई है यह सामने एक बीम लगा हुआ है आसपास पेड़ है वहां पर झूला दिखाई दे रहा है और वहां पर टावर लगा हुआ है ।

कुछ लड़के वहां पे चल रहे है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में --